ये जैसे लग रहा बस स्टैंड है लग रहा है यहां पे बहुत सारे बस भी लगे हुए है जो अलग अलग जगह जाते है और निकलते है सफर में और कोई आदमी भी देख रहे है जो बस के इंतजार मे बैठे हुए है बहुत सारे बस भी लगे हुए है कब ये बस खुले सब आदमी इंतजार में बैठे हुए हैं।

ये गौशाला है यहाँ बहुत आसरे गाय भी राखी गई और कोन चहरा भी दिए है और बहुत सारे गोबर मे जो गोबर आदमी आफ कर रहे है!

यहां पे लग रहा है जैसे बैंक तेकं का सीन है बहुत अच्छा और आदमी भी दिखाई दे रहा है और यहां लग रहा है कोई काम हो रहा है कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर भी रखे हुए है लग रहा जैसे बैंक का ही सीन होगा।